बोर्ड लगा हुआ है जहां एक पेड़ का पत्ता भी हरी हरी पत्तियां है इसमें बोर्ड में लिखा है गगन जलेसी फ्लैट --

और कुछ पत्थर काफी पत्थर रखे हुए पत्थर के ऊपर कुछ पत्ते सूखे से इकट्ठे हो रखे सभी पत्थरों पे--

और कुछ पीछे से चेयर रखीं हुई हैं व्हाइट कलर की और ऊपर ए_सी भीं लगा हुवा हैं साइड में कुछ लाइट सी हैं कलर सी और ऊपर फॅन लगा हुवा हैं दीवाल वाला।

और दो बंदे खड़े हुए है साइड में कुछ बोरी सी रखी हुई और--

कुछ टेबल पे पेपर्स रखे हुए हैं।

सर्कस शो हुआ है जहां एक बंदा खड़ा हुआ है जो व्हाइट कलर का कबूतर ले रखा है जिसने ब्लैक जैकेट टोपी ब्लैक पहले तो उसके साइड में एक और बंदा है जिसने व्हाइट --

यह एक टाइगर का बच्चा हैं।

जिनके ऊपर माता रानी मतलब को को माता रानी की रखी हुई है बाहर एक ग्राउंड सा है जो हरी सी घांस है ऊपर बिल्डिंग है भारी--